आस पास मुझे बहुत सारी शॉप्स भी दिखाई दे रही है जिनमे --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

मंदिर के आस पास मुझे अंधेरा नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे बिल्डिंग के कॉरिडोर में लाइट जली हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक अ बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने ग्रीन कलर की कोटी और पैंट पेहनी हुई है।

यहां पर दो बल्फ जले हुए हैं और एक फैन भी नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे एक रिसॉर्ड भी नजर आ रहा है मुझे यहां पर सोफा बेड और टेबल भी दिखाई दे रहा है और दो वाइट कलर की चेयर्स नजर आ रही है।

मंदिर के गेट के पास मुझे एक मूर्ति भी नजर आ रही है और झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एं और ये बहोत सड़क हैं मुझे कुछ गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही है और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।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

यहां तो मुझे ट्रेवलर के ऊपर कुछ सामान भी दिख रहा है।

यहां पे एक पर्पल और एक व्हाइट कलर का टेंट लगा हुआ है।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

इस तस्वीर में मुझे एक स्टेज नजर आ रही है।